सब कुछ पन्द्र रूपया में मिल रहा है पन्द्र रूपया का बोर्ड लगा है होलसेल का यहाँ पे जितने सारे सामान दिख रहे वो पन्द्र रूपया में मात्र पन्द्र रुपयों में और ये यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको खरीदने के लिए भी खड़े है।

यह एक डैम का पिक है जहाँ पे की दो लोग खड़े हुए यह बोहुत बड़ा डैम डैम से पानी भी निकल रहा है और यहाँ पे दो लोग खड़े है जिसके बगल में बोहुत सारे पेड़ है और यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है डैम पे ये बहुत बड़ा डैम लग रहा जिसे की पानी अभी निकल रहे डैम से पानी छोरा जा रहा --